पीछे यहां पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

और यहां पर मुझे बहुत सारे घर दिख रहे हैं।

दिख रहे हैं और इनके जो कवर्स दिख रहे हैं बाहर से जो रंग बिरंगे दिख--

मुझे यहां पर एक जगह दिख रही है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है।

और बीच में एक दरवाजा दिख रहा है यहां से बहुत सारे लोग अंदर जाते हुए दिख रहे हैं।

बिल्डिंग दिख रही है और इसके आगे की तरफ मुझे यहां पर बाइक पर बैठे हुए बहोत से लोग दिख रहे हैं।

बहोत ही सुंदर लग रहा है और यहां पर मुझे एक आदमी भी दिख रहा है। ऊपर की तरफ मुझे बहोत सारे बैलून्स लगे हुए दिख रहे है।

मुझे यहां पर एक जगह दिख रही है।

और यहां पर मुझे गीला रोड दिख रहा है चारों तरफ और बहोत सारी बिल्डिंग दिख रही है।

पीछे की तरफ मुझे बहोत बड़ी एयरोप्लेन दिख रही है।

और मुझे इसका चेहरा ब्लर दिख रहा है।

जिसका चेहरा ब्लर आ रहा है।

और यहां मुझे एक कार भी रखी हुई दिख रही है।

ऊपर की तरफ एक सुंदर सा लाइट से भरा बड़ा सा झूमर दिख रहा है।

जमीन पर भी बहोत सारे बर्तन रखे हुए हैं।

अं इनकी पीठ पे बैग है दो व्यक्ति के पीठ पे--

मुझे यहां पर एक जगह दिख रही है।

चारों तरफ बहोत ही सुंदर और हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहें हैं।